इस पिक्चर मे हमे एक योगा शिविर नजर आ रहा है जहाँ पर लोग योगा कर रहे है इस शिविर का नाम कीर्ति योगा शिविर है क्योँकि इसका बोर्ड पीछे लगा हुआ है और यहाँ पर बहुत सारी महिलायें बैठ कर योगा कर रही है।

ये भगवान शायद भगवान गौतम बुद्ध है और कुछ लोग इसकी सजावट कर रहे है और कुछ लोग इस भगवान की फोटो भी ले रहे है अपने फोन --

नीचे कई पेड़ भी लगे दिखाई दे रहे है और पीछे एक बिजली का बहोत बड़ा खंबा लगा दिखाई दे रहा --

अ यहाँ पर लिखा हुआ है की आप सबका स्वागत है यहाँ पर सामियाना लगा हुआ है जहाँ पर लोगो के लिए इंतजाम है और यहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हुए --

इस चित्र मे हमे एक बहोत बड़ा मंदिर दिखाई दे रहा हैं ये चित्र बहोत दूर से लिया गया हैं इस चित्र--